हा मतलब स्कैनर दिया हुआ हैं अ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जिसपे फोन पे पैन अ पेटीएम --

अंदर साइड पहनने की कपड़े की दुकान और बाहर जो है।

और पास में एक छोटा पेड़ दिखाई दे रहा है और चार से पांच बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने रखी हुई है दिखाने के लिए कस्टमर्स को--

भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है बैठने के लिए सीढ़ियां और ऊपर सो --

जिसने अपना मुंह देख रखा है और वो मछलियां बेच रही है बाजार में पास में दो तीन लोग खड़े है दिखाई दे रहे है।

के हाथ में दिया लिया हुआ है और एक दिया है जो पास में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और पूजा की थाली भी उसके पास में पड़ी है।

और यहां पे एक सड़क भी है जिसको बंद किया गया है।

यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर सारा सामा --

सामने काफी टी शर्ट हैं जो टंगी हुई दिखाई दे रहीं हैं और कुछ पैंट है जो अलग से रखीं हुई दिखाई दे रहीं हैं।

और सामने लिखा गया है आधुनिक मशीनों से टच व ग्लास चेंज किया जाता है।

जहां पर काफी सारे बच्चे हैं जो इकट्ठी हुईं हुईं हैं।